और यहां पर जयपुर विकास अधिकरण लिखा दिखाई दे रहा है।

गाड़ियां खड़ी हुई दिख रही है और रोड भी नजर आ रही है।

यहां बड़ा सा गेट भी है और ऊपर वायर भी दिखाई दे रहा --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

इस फोटो में सामने यहां पर ऑफिस दिखाई दे रहा है यहां एक व्यक्ति काम करता नजर आ रहा है।

बाहर एक कार भी खड़ी दिखाई दे रही है।

और बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है।

और प्लांट्स नजर आ रहे हैं।

और कुछ लोग भी खड़े हुएं नजर आ रहें हैं।

और पूजा का थाल भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक पानी का बोट भी दिखाई दे रहा है।